यहाँ पर इस्टेज पर कुछ लोग हैं जो परफॉर्मेंस करने के बाद उनकी पिच्चर ली जा रही है। बहोत सारे लोग हैं लडकियाँ हैं जो खड़ी है बैठी हुई है। एक लड़का है बीच में उनकी पिच्चर ली गयी है।

यह एक अ किसी बीजी रोड का तस्वीर है जहाँ पर रोड के किनारे में बहुत सारे दुकाने वगेरा बनी हुई है बिल्डिंग वगेरा बना हुआ है ।

यह कोई होटल की तस्वीर है सुखदेव पैलेस जो बाहर से ली हुई है अंदर में बहुत सारे शो प्लांट लगे हुए हैं पेड़-वगैरा है बनी हुई है और अन्दर में बहुत ही अच्छा लुक है बाहर में बाइक वगैरा लगी हुई है।